हमें जो सामने नजर आ रहा है वो ईटें की चुनाई नजर आ रही है सामने ईटें की चुनाई की हुई है कुछ पिलरस खड़े हैं यह अभी स्टार्टिंग है शुरुआत है।

सामने ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है लक्ष्मी चौक मुजफ्फरपुर --

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के अंदर का सीन हमें दिख रहे है ऊपर काफी अच्छे झूमर्स लगे हुए हैं।

बच्चे कर रहे हैं पेंटिंग ।